बिजली वाला है बहोत लंबा और उसमें तारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिनका सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके आगे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि--

कई बच्चे भी खड़े हुए अह खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और अह कई कुर्सियां भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पे हमें बहुत एक खाली मैदान बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है यहां पर--

यहां पर हमें एक होटल की पिक्चर है यहां पर--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

पड़ी हुई हैं और बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं और एक साइड --